और क्या बोलते सभी झाडा नजर आ रहे हैं और एक घर नजर आ रहा है।

गेट नजर आ रहा है सीढ़ियां नजर आ रही है।

यहां पर द गार्डन नजर आ रहे हैं नजर आ रही है।

यहां पे बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहें हैं डांस क्लासेस है और वहां पर रेड कलर का--

झाड़ां नजर आ रहे हैं और गेट नजर आ रहा है।

फिर एक लाल कलर का जो एक बॉक्स नजर आ रहा है।

आ कुछ खुला मैदान नजर आ रहा है।

यहां पर काफी सारे नमकीन रखे हुए हैं।

टेबल भी नजर आ रहा है टेबल के ऊपर पूरे खाने की चीजें हैं जैसा--

और एक बाइक भी है और और एक वायरा है एक खंभा है बिल्डिंगा है घरा है। इसमें--

उसको अच्छा पीले रंग की टी-शर्ट पहना दिए।

और वहां पे लटके वाले हैं लाल कलर --

एक लाल कलर का हैहरे कलर सॉरी हरे नहीं है पीला कलर का है।

और हरे रंग के झाड़ां नजर आ रहें हैं।

और इसके अंदर आदमी भी नजर आ रहा है।

दीवार है ईंट की दीवार है वहां पर।

ये एक दीवार लंबी दीवार नजर आ रही है जिसके ऊपर लाल रंग है।

यहां पर दो तीन आदमियां नजर आ रहे हैं।

फिर बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

फिर झंडे भी नजर आ रहे हैं हमें।

यहां पर बहुत सारे अह झाड़ा नजर आ रहे हैं कार नजर आ रहा है नजर आ रहा है नीचे सड़क नजर आ रही है।

यहां पर आ दो चेहरा नजर आ रहे हैं।

जिसमें जादा दिन जाना ठहरे वाले हैं गाड़ी लेकर--

एक लाड़ी भी नजर आ रही है लाडो नजर आ रहा हैं।

झाड़ नजर आ रहे हैं नीचे जमीन नजर आ रही है।

फिर झूले नजर आ रहे हैं फिर एक बॉक्स से वो नजर आ रहा है।

यहां पर एक कार है फिर नीचे जमीन भी है वहां पर।

वे लाल रंग की पट्टी है फिर उम्म--

यहां पर बहोत सारे फोना नजर आ रहे है वे--

एम्म फर्स्ट मै दो तीन जाना बैठा हुआ है वो उन्हें बता रहा हैफिर एक आदमी।

यहां पर बहोत सारे कुर्सियां नजर आ रहे हैं।

फिर फैन नजर आ रहा है दो फैन नजर आ रहे हैं।

ये वॉलपेपर नजर आ रहा है।

यहां पर गेट नजर आ रहा है फिर एक बिल्डिंग बिल्डिंग।

एक साइकिल नजर आ रही है एक।

औरत नजर आ रही है फिर एक गाड़ी नजर आ रही है।

अब इसकी टांग वगैरा सब नजर आ रहे हैं।

कुर्सियां नजर आ रही हैं फिर छत्री नजर आ रही है।

ये झाड़ा नजर आ रही नीचे हरियाली नजर आ रही है।

यहां पर कुछ वगैरह नजर आ रही हैं।

पेन नज़र आ रहा हैटेबल नज़र आ रहा है।

ड्रग्स वैगौरह नजर आ रहे हैं एक पैकेट नजर आ रहे हैं।

नीचे कुछ बीछा हुआ नजर आ रहा है।

पैकेट में नजर आ रहे हैं फिर एक बंडी नजर आ रही है।

यहां पर बहुत सारे झाडा नजर आ रहे हैं।

दो कारण नजर आ रहे हैं चटैया नजर आ रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे कारा नजर आ रही है वायर नजर आ रही हैं फिर एक झाड़ नजर आ रहा है।

ये नीचे सड़क नजर आ रही है एक औरत गुजर रही है वह नजर आ रहा है।

वगैरह नजर आ रहे हैं कुछ झाड़ा वगैरह नजर आ रहे हैं नीचे सड़क नजर आ रही है।

यहां पर एक पीले रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है। काफी सारे झाड़ा वगैरा नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक दुकान नजर आ रही है जीसमें काफी सारे मिठाई वगैरह है जूसेस वगैरह हैं फैन नजर आ रहा है।